एक आदमी खड़ा है पीछे स्टार बन रहे है स्टार में कई कलर है इसमें चश्मे लाग रहे घडी भी है।

तीन चार दुकाने है। स्टोर बंद है। एक शीशा है।

एक ओटो वगैरा खड़ी है बाइक पे बहुत सारे आदमी कीचड़ है बारिश का पानी इकठ्ठा हो रहा खंबे पे बैनर लग रहा है पेड़ा की छाया है वायर जा रहे हैं।

कहीं कहीं सफेद रंग की एक वायर जा रही है एक गेट खुल रया है।

खुला आसमान है हरे पूरा जंगल हरा हरा है साथ में सूखी हुई--

एक तोड़ने वाला ये मशीन है जिसको पूरा काट ही दे रहा है काट दे रहा है डिब्बे है।

और साथ में बीयर के कैन तीन रखे हैं दो प्लेट हैं।

घास फूस लिख रखा है भीतर एक कंप्यूटर धरा है।

पंखे है ब्लैक कलर के व्हाइट कलर के हो रहा है सामने एक गेट है।

ये वाटर पारक है जिसमें हम बहोत सारे झूले झाले अं उ है नीचे वाटर पारक है झूले है दूध देखत तो ग्राउंड बहुत बड़ा घास वगैरा गाड़ी वगैरा--

तरह तरह के डिजाइन है येलो ब्लू स्काई ब्लू टावर हैं टंकिया हैं घर दिखाई दे--